हारमोनियम से ध्वनि प्रदुष होती है पीछे बोतल रखी है।

चित्र में तोते दिख रहे हैं।

बाहर कुछ लोग खड़े हैं।

यहां बहोत सारे लोग लाइन में कतार लगा के खड़े हैं।

कुछ लोग ग्राउंड में बैठे देखे जा सकते हैं ग्राउंड के चारों ओर काम चल रहा है घरों का।

इसकी अभी बाउंड्री हुई हुई है।

नीला आसमान इसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा है।

यहाँ टेबल पे बहोत सारे फूल के छोटे पौधे शोरुम वाले रखे हैं।

वहां पे कुछ लड़के और कुछ लड़कियां खड़ी हैं।

मेले के बगल मे खाली स्थान भी पड़ा हुआ है।

और चारों तरफ हरियाली देख सकते हैं।

पीछे मोर पंख भी देखा जा सकता है।

एक पीले रंग की बस खड़ी है।